और मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक फूलों की दुकान दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे दो कमरे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे तीन बॉटल दिखाई दे रही है।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

यहाँ पर मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे दो अनारदाना --

यहां पर मुझे एक महिला दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे दो टेबल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक शेल्फ दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे बहोत सारी घास दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक कार दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे ऑन ट्रेडर्स की दुकान दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे एक घर की छत ढलती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे कुछ रॉड दिखाई दे रही है।